गाड़ी का पार्ट्स अंदर के ओर चला गया था आगे का चक्का एकदम काफी ज्यादा खराब दिख रहा है गाड़ी का सर्विसिंग्स हो रहा है यहां पे --